मच्छी की मच्छी वाले की दुकान का फोटो है।

नयी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कोर्स किया किये जाते हैं।

देखो कितने बढ़िया तरीके से इस रूम में--

देखो बैंक के सामने रास्ता भी काफी चौड़ा है।

देखो जो दुकान है।

यहां चामुंडा है शायद।

देखो यह जो फोटो है मकान के अंदर का फोटो है काफी बढ़िया है।

यह जो फोटो है रेलवे स्टेशन का फोटो है देखो।

देखो यह जो फोटो है --

यह एक स्टैंड बस स्टैंड का फोटो है यहाँ पर ठेंगे ठेले वाला केले बेच रिहा है।